दरवाजे में दो तरह की जाली लगी हुई है एक हरी और एक फिरोजी --

जो जिसका कलर सफेद है। सुनसान सड़क है सुनसान सड़क के आसपास --

एक शेरवानी का कलर कत्थई और एक का सिल्वर और एक का जैकेट का सिल्वर --

सामने एक बोर्ड लगा है। जिसपे बीएमडब्ल्यू लिखा है।

इसमें कुछ मशीनें फिरोजी और कुछ मशीनें कत्थई कलर की हैं। नीचे --

हरा नेट बिछा है और आसपास काले कलर का पेंट किया --

इस तस्वीर में हमें बोहोत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो अपने-अपने कार्ड सीट पर अपने-अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पुरुष नजर आ रहा है जो अप कसरत कर रहा है। एक बॉल के ऊपर उसने पैर रखे हुए हैं।

बस का कलर सफेद और फिरोजी है। सामने से एक औरत जा रही है जिसने पर्पल कलर का सौल डाला हुआ है और --

टीचर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सामने टीचर खड़ी हुईं हैं जिन्होंने सफेद कलर की यूनिफॉर्म पेहनी हुई है और सर पर सफेद कलर का --

इस तस्वीर में हमें बोहोत सारी बिल्डिंग नजर आ रही हैं और एक सामने बीच में गंदा तालाब नजर आ रहा है।

अ दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक लेटा हुआ है जिसने नीले कलर की शर्ट पहनी है और एक खड़ा हुआ है जिसने फिरोजी कलर की टी शर्ट पहनी है।